इस तस्वीर में मुझे दो कमोड दिखाई दे रहे हैं।

एक कार नजर आ रही है कार के सामने एक आदमी खड़ा मोबाइल चला रहा है।

ये लड़का अच्छा नहीं दिख रहा है बहोत बकवास दिख रहा है।

कैंची के बगल में एक पैन दिखाई दे रही है और दुकान में बहोत सारी चीज़ें रखी हुई दिखाई दे रही है।